और लिखा हुआ है यहां पे राजा प्रिंटिंग बुक हाउस ।

और उधर जो है बहुत सारा ऊँचा-ऊँचा पहाड़ बहुत ही कतार में सारे के सारे दिख रहे हैं।

ये इधर पत्थर है बड़ा-बड़ा चट्टान।

और उधर बहुत सारा घर दिख रहा है। कोई गांव भी है शायद।

यहाँ किसी का बर्थ डे है मनाया जा रहा है ।

और चारो ओर जो है घास लगा दिया गया है व फूल लगाया गया है गेंदा का फूल बहुत सारा --

जहाँ पे बच्चों के फिसलने के लिए जगह बनाया गया है।

और बहुत सारा छोटा-छोटा पौधा लगाया गया है डिजाइन डिजाइन का।

रास्ता भी बना दिया गया है बहुत सारा कटिंग करके पेड़ों को।